तीन चार आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक कपड़ा दुकान के जैसा दिखाई दे रहा है।

यह एक शांत वाली खंडाला के जैसा नजर आ रहा है।

पास बहुत अच्छे से सजाया गया है।

बहोत सारे हर तरह के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे शांत एरिया दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है।

यहां पास बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पास बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

और कुछ साइड साइड में दिखाई दे रहे है।